ठीक है घर है दो तल्ला मकान है।

आदमी लोग देख रहे हैं।

दुकान बहोत बढ़िया है बिस्कुट वगैरा है। काटा लगा हुआ है कंप्यूटर काटा।

दिन में लडका खड़ा है। फूल है। फूल का बागान है लगा हुआ।